स्लेटी कलर की रोड डली हुई है और कुछ घास भी लगा हुआ--

मंदिर बने हुए है मस्त न नर्मदा मंदिर लिखा हुआ है कुछ खम्बे लगे हुए हैं।

सामने एक मशीन रखी हुई है जो कि नीले कलर की है और एक चोतरा बना हुआ है जो कि आसमानी कलर का है कुछ कट्टे रखे हुए है ।

पीली कलर की वो बने हुई है एक लाइट है जो सफेद कलर की है उसपे लाल कलर की लाइटे बनी है कुछ पीली कलर की लाइटे हैं।

सामने एक होटल लिखा हुआ है जो पीले कलर का --